यहां पर एक कार खड़ी हुई है जिसके शीशे के अंदर दो तिरंगे रखे हुए हैं।

यह एक चॉकलेट केक है जो की राउंड शेप में है।

और लड्डू वाली चॉकलेट भी रखी गई है। इसके ऊपर चेरी भी रखी गई है।

यहां पर काफी सारी हरी मिर्चें पड़ी हुई है।

बच्चों के पीछे एक दरवाजा है दरवाजे की साइड एक विंडो है।

यह एक फिटनेस गैरेज की शॉप है जिसकी ओपनिंग अभी हुई है।

एक बेकरी शॉप है जिसमें काफी सारे सामान रखे हुए हैं।

किचन के अंदर थोड़ा डेकोरेटिव सामान भी लगाया हुआ है।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

इसके ऊपर हिटली लाइट लगी हुई है।

के बाहर एक बड़ा सा फील्ड है जहां पर कुछ पौधे भी हैं।

यहां पर एक बिस्तर है बिस्तर पर ब्लू कलर की चादर भी दिखाई दे रही है।

बाहर इसके बहुत सारे गमले भी दिखाई दे रहे हैं और बाहर के और एक सुंदर सा सनसेट भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बाहर एक खुला सा मैदान है बीच में एक गड्ढा है जिसमें कुत्ता भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक आदमी ऊपर की ओर चढ़ रहा है एक आदमी नीचे सड़क पर चल रहा है उसके ऊपर साइड में बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इन पर दो पोस्टर लगे हुए हैं।

उससे नीचे ओ_आर_एस के पैकेट भी रखे हुए हैं।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसमें छोटी बड़ी सभी प्रकार की मशीनें रखी हुई है।

इनमें कुछ डब्बे कुछ गिरीश कुछ मशीने सभी प्रकार की चीजे रखी हुई है।

यह एक पिज़्ज़ा शॉप है जो की डबल मंजिल की है।

यहां पर दो आदमी और एक लड़की खड़ी हुई है।

यहां पर बाहर एक स्कूटी है और एक खाने पकाने के सामान की चीजे हैं।

और तीन चार गमले भी दिखाई दे रहे हैं।